यह तस्वीर एक वेलकम टूरिजम केपिटल महाराष्ट्र औरंगबाद का है ।

यह तस्वीर एक पार्क का दिखाई पड़ रहा है जहां पर रंग-बिरंगे गुलाब के फूल दिखाई पड़ रहे हैं।